यहाँ पर देख सकते है बैंक के एटीएम की पिक्चर है ये--

बैंक के बहार एक स्टैंड पर छतरी लगी हुई है उसके साथ एक बाइक खड़ी है।

और इसमे पाँच छे एसी लगे हुए है बिल्डिंग के मेन गेट के बाहर एक सफ़ेद रंग की गाडी खड़ी है।

और जो सारे रैक पर सामने कुछ प्लेट्स बर्तन रखे हुए --

इसके साथ ही एक नीली जीन्स में आदमी खड़ा है थोड़े दूर कर-कर कुछ ईंट भी रखी है।

यहाँ पर बहुत सारी अंडे की क्रेटस रखी हुई हैं।

ये अप देख सकते हैं ये यदू वंशी हॉस्पिटल की पिक्चर है।

ये किसी स्कूल के कमरे की तस्वीर है इसमें एक कुर्सी पड़ी है ब्लैक बोर्ड लगा है।

सामने चिप्स के कुरकुरेस लेज के पैकेट टंगे हैं।

उस की बोटल टंगी है स्टैंड पर स्टैंड भी रखा है यहाँ पर और बैठ के--

यहाँ पर देख सकते है ये एक बहोत बड़ी दुकान है।

आप देख सकते है बालों पे लगाने वाला आंवले का तेल है शैम्पू है हैंडवॉश है।

और बसों के पीछे एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के पीछे वृक्ष हैं।